यहां पर एक बस स्टैंड दिखाई दे रहा है जहां पर दो बसें चल रही हैं बस नीले कलर की और उनकी खिड़कियां ब्लैक कलर की और यहां पर आदमी--

यहां पर दो पेड़ है। पेड़ के बीच में एक छोटा सा बच्चा खड़ा है जो जिसने ब्लैक कलर की पैंट पहनी हुई नीचे से शूज डाले है जो ब्लैक कलर के है।

और इसपर बैनर्स भी लगे है कुछ आसमान वो नील दिखाई दे रहा और तार है जोकि ब्लैक कलर की है पीछे पहाड़ है।

येलो कलर की है और पीछे एक और टेबल है।

और पीछे खिड़कियां हैं खिड़कियों के बाहर का जो दृश्य है वो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है दीवारों का जो कलर है वो सफेद कलर का है और ये बेड के ऊपर बैठी हुई है।

उसने चप्पल डाली उसने हाथ में एक बाल्टी पकड़ी बा बाल्टी में--

अंदर जाने का जो रास्ता है वहां पर मैट बिछा हुआ जो कि हरे रंग का है और लाल रंग का भी दिख रहा है और इनकी शॉप है।

यहां पर तारें बिखरी हुई है ऊपर आसमान है जो कि ब्लैक कलर का है और यहां पर बैनर्स भी लगाने का औरत भी घर की तरफ चल रही है जिसका चेहरा ब्लर दिखाई दे रहा उसने ब्लैक कलर की--

पता नहीं जिन्होंने एक ही साथ में दो आदमी औरत खड़े हुई है जिन्होंने उसी रंग की पैंट पहनी हुई है और ये उनको कुछ सीख रही है इनको डाट कर रहे है और ये बहोत अच्छे हैं।

कल हरी भरी दिखाई दे रही है और उतरने के लिए सीढ़ीया है।

के बादल दिखाई दे रहे है लगी हुई है और ये आदमी यहां पर कुछ नाप तोल रहा है मगर बहुत गड्ढे बनाए गए हैं बहोत--

यह है जहां पर दो आदमी खड़े हुए प्रैक्टिस कर री दिखाई दे रहे हैं। एक ने पेहना हुआ है जिसने हाथ आगे की तरफ किए हुए है।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

व्हाइट कलर की यहां पर भी लगी हुई है ।

यहां पर बहुत बड़ा मंदिर है यहां पर लोग दर्शन करने के लिए आय हुए है इस मंदिर को सजाया गया है फूलों और लड़ियों से।

अंदर बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई हैं और नीचे मैट भी बिछाए गए हैं लाल रंग का मैट है डी_जे भी लगे हैं जो कि ब्लैक कलर के और एक लड़की यहां पर खड़ी हुई है जिसने--

और सामने एक सरदार भी बैठा है जिसका चेहरा ब्लर दिखाई दे रा है सबके चेहरा ब्लर दिखाई दे रे हैं।

यहां पर बहोत बड़े बड़े देवदार की पेड़ हैं पिछे एक बहोत बड़ा घर है जो की रेड कलर कि इसकी चादरे है नीचे यहां पर--